व्हाइट कलर का है सामने बोर्ड लगी हुई है सामने एक खिड़की है जिसमें बहुत सारी रोशनी अंदर आ रही हैं।

यहां मंदिर नजर आ रहा है और बहुत बड़ा गेट नजर आ रहा है दिवारे ऐसे बहुत कलरफूल है पीला हरा लाल नीला--

पेंसिल्स पानी के बोटल रखा हुआ है और साइड में कैलेंडर भी लगा हुआ हैं।